पीछे बहोत सारे रेक्स है सभी रेक्स में शैंपू तेल साबुन च्यवनप्राश रखी गई है।

दुकान के ऊपर बहोत सारे पेन झूला कर रखे गए हैं।

सामने में एक दुकान है जिसके ऊपर आशीर्वाद आटा और बिंगो चिप्स की एड है।

यह एक शादी का गेट है जो बहोत सुंदरता से सजाया गया है।

ऊपर तरफ पिंक कलर के फूल लगाए गए हैं और उनके पीछे कुछ पत्तियां है उसके छत पर सफेद रंग के कपड़े से ढके गए हैं और ऊपर बीच में सफेद रंग के फूल से सजाए गए हैं।

नदी के किनारे बहुत सारे घर हैं घरों के पीछे बहुत लंबे लंबे पाइन ट्री है।

यहां चार लड़कियां नृत्य कर रही है सभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है ब्लू कलर की ब्लाउज पहनी हुई है और माथे में सफेद रंग की फुल बांधी रखी है।

यहां पर टेबल और चेयर्स है टेबल ब्लैक कलर की है और चेयर्स भी ब्लैक कलर की है।

उसके पीछे बाकी लोग भी कसरत कर रहे हैं।

ब्रिज के नीचे से नदी जा रही है सामने में बहोत बड़ी बड़ी पत्थर लगाए हैं।

पहाड़ पूरा जंगल जंगल है।

पीछे सब लोग यही कर रहे हैं एक रस्सी पे बहुत सारे कपड़े टंगाए गए हैं।

सभी छात्र अपने अपने ब्लू कलर के चेयर्स पर बैठे हुए है बच्चे अपने आगे कॉपी में नोट कर रहे है सभी लड़के और लड़कियां मास्क पहन कर बैठे हुए हैं।

नदी का पानी ब्लू है नदी के उस तरफ गार्डन है।

अंदर बहोत बड़ी सी एक पेड़ है।